बस स्टैंड में खड़े है और बूढ़ा बस पर चढ़ रहा है। बस --

पास हुआ है जिसका हवा पास हुआ है। साइकल का टायर का हवा पास हुआ है।